ये एक समुद्र हैं जिसके बीचो-बीच एक नाव खड़ी हुई हैं नाव को बहुत ही सुन्दर सजाया गया हैं नाव के सामने आ देश का झंडा लगाया गया है और पीछे बजरंग बली के झंडे लगाए गए हैं नाव जो है--

यहाँ पर बहुत बड़ी फ़ोन है उसमे फ्रंट कैमरा से वह सेल्फी ले रहा है और यहाँ पे अ पीछे एक अ ए.सी. भी नजर आ रहा हैं जो की वाइट कलर की है।

इसने दोनों हाथ सामने की तरफ किया है और वह सामने की तरफ देख रहे है। नीचे का जो फर्श है वह पूरा ही ग्रीनरी हुई है पीछे बहुत सारे लोग है और लाइटिंग भी की गई है। और यहां पे आसमान पूरा खुला हुआ है। यहाँ पर आस पास और कोई लोग नजर नहीं आ रहे --

हैं जहाँ पे काम चल रही हैं बहुत बड़ी फैक्ट्री की जैसे जगह हैं यहाँ पे एक गाड़ी हैं बहुत बड़ी उसको लोड और अनलोड कर का भी काम चल रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं।

वो लोग काम कर रहे हैं सबने टोपियां पहनी हुई हैं। अलग -अलग कलर्स के नीचे का जो एरिया हैं। वह थोड़े से ख़राब और सुनसान हैं। यहाँ पे अलग -अलग बैग्स में जो वाइट कलर के हैं। उसमे कुछ- कुछ चीजे रखी हुई हैं और सारे लोग काम में --

जहाँ पे येलो कलर की और नीचे एक लड़का खड़ा हुआ हैं जिसने एक बैग लिए हुए हैं वह उसने वाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई हैं उसने दोनों हाथे अपने जेब पे अंदर डाली हुई हैं उसने ब्लैक कलर की अ बैग ली हुई हैं और वह सामने की तरफ सेल्फी ले रहे हैं।

लेह हैं जहाँ पे एक आदमी अ ब्लू कलर का कपड़ा पहना हुआ हैं उसने एक औरत को एक हाथ पे ट्रॉफी दे रही हैं औरत उसको देख रही हैं और--

यह एक दुकान हैं जहाँ पे बहुत सारे बैनर्स लगे हुए हैं और उसके साइड में एक चार बच्चे खड़े हुए हैं चार बच्चे में से चारो तीनो ने एक जैसे कपड़े पहने हैं और एक लड़की जो हैं उसने बार्बी कपड़े पहने हुए हैं।

यह दुकान है जहाँ पे दो औरते मछली की बिक्री कर रही हैं एक ने साड़ी पहनी हैं और एक ने सूट पहनी है एक सामने की तरफ देख रही हैं उसका हाथ दोनों थाइस के ऊपर है और एक औरत हाथ पे फ़ोन लेके बात कर रही हैं।

यहाँ पे एक आदमी हैं जो बाइक से जा रहे है उसने हैलमेट पहना हैं जोकि ब्लैक कलर की हैं रास्ते पे बहुत सारी धुप हुई और लोगो की शैडो रास्ते पे नजर आ रही हैं।

यहाँ बच्चे लोगो के अ सारे अपने कामो में व्यस्त हैं यहाँ पर एक टीचर खड़ी हुई हैं जिसमें औ हाथ में कुछ रखा हुआ हैं वह देख रही हैं कुछ दूर में थोड़ा और देख रही हैं पीछे ग्रिल लगी हुई हैं जो की ब्लैक कलर की हैं और देखने में अच्छा लग रहा हैं।

एक सिस्टर है जो वाइट कलर का कपड़े पहन कर उसने एक चश्मा भी पहना हुआ है और सामने की तरफ बच्चे का ग्रुप देख रहे है यहाँ पे जो गेट है वह खुला हुआ है और विंडोज नही खुले हुऐ गेट का जो कलर है वह ब्लैक कलर की है और थोड़ी सी खुली है और थोड़ी सी बंद हुई है यहाँ पे बोहोत अच्छा लग रहा हे।